पिंक और येलो में-ए जमीन है और स्काई कलर उ उ छा वाइट कलर का आसमान है और ब्लू ब्लू इय बॉर्डर हे।

होटल हैयहाँ गैस लोग आकर रहता है सामने में एक पौधा का तब है और सामने में ब्लैक कलर गेट है और एक जींस अंदर जा रहे।

हाई क्वालिटी व्हाइट कलर प्रेस पहनकर रेड कलर लैंग्वेज पहनी हुई है और ये बगल में टोपी पहन कर एक आदमी खड़ा है लड़की ग्रीन कलर कर पिंक कलर का शर्ट पहने है।

एक लोकल सैलून है।